कपडे का दुकान का जो लाइटिंग है बहुत ही बड़िया है और यहाँ पे जो है--

बहोत सारे किताब सेल्फ में भी रखा हुआ नजर आ रहा है। किताब का दुकान का जो लाइटिंग जो है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सुंदर है।

ये जो तस्वीर है ये तस्वीर मुझे कोई मंदिर का नज़र आ रहा है ऊपर में जो मंदिर का जो --

एक जो पोधे भी लगे हुए हे फूलो के प-पोधे नज़र हुए हैं लेकिन देखने लायक ये यतीम बच्चे --

कैफे का तस्वीर है शॉप फ्रंट ऑरेंज कलर का है दरवाजा है बाहर में स्कूटी रख रखा हुआ है और--

हेलमेट पहना हुआ है जैकेट पहना हुआ है उनके पीछे में ट्रक नज़र आ रहा है कुछ लोग भी नज़र आ रहे है रास्ता भी नज़र आ रहा है आज दिन बहुत ही सुन्दर है।

कलर जो है बिल्डिंग का फेड हो चूका है और लगभग और यहाँ एक थोडा सा पेड़ नजर आ रहा है पेड़ में हरे भरे पत्ते नजर आ रहे है।

और ऊपर में जो आसमान जो है नीला नज़र आ रहा है और दिन का समय है तस्वीर जो लिया गया है मंदिर का गेट का ये बहुत ही बढ़ियाँ सा तस्वीर लिया गया --

सुन रहे हैं खड़ा होके यह कुछ जमा हुआ है ब बड़ा सा पेड़ भी है पेड़ में हरे भरे पत्ते हैं।

और हॉल का जो लाइटिंग है वो बहुत ही बढ़ियाँ है बहुत ही सुन्दर और क्लियर आया हुआ है पिक्चर जो बहुत ही बढ़ियाँ दिख रहा है इस समय।

यहां पे जो है एक बड़ा सा मंदिर अह दर्शाया गया है मंदिर के बाहर में ऑटो पार्किंग किया हुआ है रास्ता भी है बड़ा सा मंदिर का जो है छोटा सा--